ये बहोत बड़ा खुला मैदान लग रहा है बहुत बड़ा खुला मैदान है। बहोत सारी गाड़ियां है यहां पर बहोत सारी गाड़ियां है यहां पर हर--

यह खुला मैदान लग रहा है यहां ब सामने ब यहां सामने एक दरवाजा है यहां पर सामने खंबा है है सामने दीवाल है पिलर है।

ये एक दुकान लग रही है एक दुकान लग रहे हैं हर चीज दिख रही है यहां।

बहुत सारे दिख रहे हैं ये जिम की दुकान लग रही है एक ये जिम की दुकान है बहुत बड़ी बहुत बड़ी दुकान लग रही है जिम की ये।

एक पेट्रोल पेमप का दुकान लग रही ये एक पेट्रोल पेमप की तरह लग रा है।